यह एक गार्डन है जिधर बहुत सारे बच्चे बैठे हुए हैं और साइड में कुछ टीचर्स भी बैठी हुई हैं जो की साड़ी पहनी हुई हैं।

चल ठीक है मोटरसाइकल भी है देखने में बोहोत अच्छा लगता हैं पेट्रोल पंप